जो कि एक शेड़ के नीचे है जो शेड़ जो है वो लोहे का बना हुआ है।

और साइकिलें भी लोहे की हैं और साइकिलों का रंग पीला है।

और एक इधर बूढ़ी अम्मा बैठी है।